यहां एक बड़ी सी ऑफिस दिखाई दे रही है और यहां एक बड़ा सा बोर्ड है। बॉर्ड पर लिखा है सेंट्रल महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ सेवंथ डे एड्वेंटिस्ट ।

छोटे बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां पे एक कंपाउंड दिखाई दे रहा है।

ए लड़का ब्लू टी-शर्ट ब्लू जींस पहना है और यहां पे सफेद कैप पहना है बैग है हाथ में और यहां पे लड़की है। उसने सॉक्स पहने है और यहां पे उसने शॉर्ट्स पहने हैं और यहां पर उसने गॉगल लगाए हैं।